ये सामने एक शादी का मंडप है।

नीचे कुर्सीओं पर कोई बच्चे बैठे हुए हैं।

और एक कुर्सी पड़ी हुई--

और सामने एक टैक्टर और है।

और बिल्कुल सामने एक सफेद कलर की दीवार है जिस पर एक ए_सी_सी लाल कलर का लिखा हुआ है।

और एक टेबिल लगी हुई है जिस पर सफेद कलर का कपड़ा है।

कुछ बिजली की तार दिख रही है और एक बिजली का खंबा दिख रहा है।

यहां पर कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं।

सामने बैलून लगे हुए हैं।

और नीचे एक डस्टबिन रखा हुआ है स्टील का।

सामने एक बोर्ड है जिस पर बार क्यू नेश नेशन लिखा हुआ है।

की क्रॉस करते कुछ बाइक लग गई हैं।

बिजली का खंभा खड़ा है।

इस फोटो में कुछ मोटरसाइकिलों के पहिए दिख रहे हैं।

सामने कुछ व्यक्ति दिख रहे हैं।

यहां पर बहुत सारे फ्लॉवर्स रखे हुए है।

लोहे का गेट लगा हुआ है।

सफेद कलर का बीम ढाला हुआ है।

साइड में कुछ खंभे खड़े हुए हैं।

और गेट के ऊपर एक वासु ग्रीन का बोर्ड लगा हुआ है जो हरे कलर का और सफेद कलर का है।

और कुछ घास सपाट है और कुछ घास बड़ी बड़ी है।

पीछे राइट में एक साइकिल दिख रही है जिसमें एक घंटी लगी हुई है।

गाड़ी के पीछे कुछ पेड़ खड़े हुए हैं जो कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं।

जिसने सफेद कलर की टी शर्ट पेहनी हुई है।

इसके पीछे कुछ लाल कलर के बैलून लगे हुए हैं।

और साइड में कुछ स्टैंड लगे हुए हैं।

पानी बह रहा है और कुछ झरने चल रहे हैं।

यहां पर सामने एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है।

फोटो में एक सामने छोटी सी ट्रेन दिख रही है।

और यहां पर एक काउंटर लगा हुआ है इसके ऊपर कुछ रखा हुआ है।

पिंक बस के साय सामने एक सीढ़ी लगी हुई है और पिंक बस पर कुँवार लिखा हुआ है।

लेफ्ट साइड में दो चेयर्स पड़ी हुई हैं और कमरे का कलर व्हाइट है।

क्रेटों के अंदर सफेद कलर की मछली पड़ी हुई हैं।

इसमें काले कलर की जाली लगी है लोहे की।

यहां कुछ मुर्गे पिंजरे के अंदर बंद है।

मशीन के नीचे कुछ लोहे के स्टैंड बने हुए हैं।

पीछे एक एक बोरिंग कलर का पर्दा लगा हुआ है।

इस फोटो में एक रेस्टोरेंट सा दिख रहा है।

टेबल के ऊपर एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है।

फोटो में कुछ संतरे हैं।

साइड में अनार लगे हुए है।

सामने कुछ आदमी दिख रहे हैं।

एक आदमी बैठा हुआ है।

साइड में एक रिक्शा जा रहा है। इस पर कुछ आदमी बैठे हुए हैं।

और ऊपर कुछ डिजाइन बना हुआ है।

औ इसकी छत पर कुछ लाइटें लगी हुई है।

जो सफेद कलर की है।

जो लाल कलर का है और जिस पर पीले कलर से लिखा हुआ है रॉकी मोटर्स ।

एक आदमी ने हाथ में फोन ले रखा है।

इन्होंने अपने सर पर हेलमेट लगाया हुआ है।

कुछ पेड़ खड़े हुए हैं।

उसके ऊपर एक लाल कलर बोर्ड --

इसमें एक हेलीकॉप्ट खड़ा हुआ है।

जिसने गले में बैग डाले हुए हैं।

भारत पेट्रोलियम लिखा हुआ है।

नीचे एक लड़का बैठा है।

ट्रक से लगकर एक लोहे का पतला सा पाइप है।

पाइप के नीचे एक बाल्टी रखी हुई है।